यहाँ पर एक ए_टी_एम मशीन दर्शाया गया है जिसके सामने ऊपर बोर्ड है।

इसमें लोहे की छड़े लगी हुई है और एक बड़ा-सा गेट है गेट के ऊपर कुछ बोर्ड लगा हुआ है और सामने एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहे हैं।

यहाँ पर डबल मंजिले की मकान है इसमें नीचे तीन गेट हैं।

यहां पर बहुत बड़ी भगवान की उनकी मूर्ति है। उनके बाहर से उनको अन्डरग्राउन्ड किया जा रहा है। बाहर से कुछ उनके बनाया जा रहा है जिसमें राड लगे हुए हैं।